साइड में बजरंगबली का एक हम्म मूर्ति बना है और इस साइड में महादेव की एक मूर्ति बनी है सामने --

सैलून के ऊपर के बैनर रेड कलर के है सामने एक आदमी खड़ा है जो कि वाइट शर्ट पेहना है ब्लू जींस पेहना है उसके हाथ में घड़ी है।

यह एक स्कूल की गेट दिखाई दे रही है गेट के अंदर अ तीन चार बच्चियाँ अंदर जाते हुए दिखाई दे रही हैं ।

कुछ लड़के बैठ के अपने हाथ का काम कर रहें हैं सामने एक लड़के के हाथ में स्काई कलर का चार्ट पेपर दिखाई दे रहा है सभी यूनिफॉर्म में हैं।

ये एक पहाड़ी अंचल है रास्ते की तस्‍वीर है रास्ते में बहुत सारी बस जा रही है।

टोटो जा रही है बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं आस-पास अ घने जंगल दिखाई दे रहे हैं नीला आसमान स्पस्ट दिखाई दे रहा है बहुत ही खूब सुंदर सा दृश्य है।

गेट के बाहर एक अ बहुत सी चेयर रखी हुई है।